बेडरूम के सामने एक आदमी खड़ा है सफेद जूता पहन करके.

उसके बगल में कुछ सफेद कलर का पाइप लगा हुआ--

और रिसेप्शन का टेबल है.

यह फोटो एक फास्ट फूड फोट दुकान का फोटो है. दूका--

इसमें दूकान चढने के लिए एक सीढ़ी अ सीढ़ी हे.

यहां पे बहुत सारा महिलाएं पुरुषे अ-गैदरिंग में शामिल होने के लिए आए हैं.

बस बस ऊपर मे एक पियूष बतानेकुल लिखा हुआ है.

हॉस्पिटल के बाहर में सदर अस्पताल गोपालगंज का बोर्ड लगा हुआ है.

इस रेस्टोरेंट के बाहर में रेस्टोरेंट लिखा हुआ है.

इसके सामने पोस्टर भी लगे हुए हैं.

बहुत सारे किताब इस दुकान में रखे हुए हैं.

और दो आदमी बाईक से अंदर घुस रहे हे.

सामने में ए एक आदमी खड़ा है व्हाइट शर्ट पहन के.